एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में एक बहुत बड़ा एक गेट लगा दिखाई दे रहा है गेट का कलर ब्राउन दिखाई दे रहा है और एक गेट --

नीचे दो सीढ़ीयां लगी हुई दिखाई दे रही है जो टेबिल की बनी है वेयर स्टेज पर एक --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

बहोत सारे फूलो से सजा हुआ दिखाई दे रहा है टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

लगता दिखाई दे रहा है सीढियों पर एक महिला भी खड़ी हुई दिखाई दे रही --

उड़ती हुई दिखाई दे रही है येलो कलर का डस्टबिन भी रख --

दिखाई दे रही लाइन बहुत लम्बी लगी हुई दिखाई --

स्टेज पर बहोत सारे फूल लगे हुए दिखाई दे रहे फूलो --

एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी बेंचे हैं और --

दिखाई दे रहा है कुछ हरा पानी भी दिखाई दे रहा है और --

बहोत सारे गुब्बारें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं रिबन लगी हुई दिखाई दे रही --

एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी लाइट --

पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पर्दो का कलर नीला दिखाई दे रहा है बहुत --

पर मनोकामना मंदिर द्वारा श्री कीर्ति आजाद --